और यहा पे बहुत सारे घास लगे हुए पेड़ है और एक खंबा दिखाई दे रहे तार का और वहा पे एक छोटा सा घर बना हुआ है बहुत सारे पेड़ लगे --

यहाँ पे एक छत पे फड बिछाया गया है बहुत सारी अ पाइप वगैरा भी लगी हुइ है और--

यहा पे हमे एक बडीसी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिसमे बाल्कनी है। व्हाइट कलर का पेंट हुआ है। येल्लो कलर का बॉर्डर बना हुआ है। एक तरफ रेलिंग लगी हुई है। डस्टबीन रखा हुआ है। पेड़ लगे हुए है। खंबे दिखाई दे रहे बिजली के।

यहाँ पे एक रोड जाता दिखाई व दे रहा है अ अगल बगल मे मिट्ठी का ढेर रखा हुआ है एक जगह रेती रखी हुई है एक सामने घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है जिसमे बहोत सारे ला तार गए हुए है और कुछ कुछ लगे हुए है उसमे --